और कुछ पेड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे है एक लाइट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ बच्चे जो है सेल्फी ले रहे ।

और यहाँ बहुत सारे बलून्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि वाइट और पिंक कलर में हैं और एक वाइट कलर का बल्ब जल --

और यहाँ पर रंग बिरंगी लाइट्स भी जल रही है एक बड़ी सी पीले कलर की लाइट्स भी यहाँ पर जल रही है और उसकी रोशनी एक लड़की पर पढ़ रही है जो की सामने --

यहाँ पर बहुत सारे लोग व्हाइट कलर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ ब्लैक कलर के बैग भी यहाँ पर रखे हुए हैं। सामने एक ब्लैक कलर की टी --

यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने व्हाइट कलर का कपड़े पहने हुए हैं और वह अपनी-अपनी चटाई पर बैठे हुए हैं।

यहां पास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने स्वेटर पहनी हुई है और साथ ही कुछ बहोत सारी सफेद कलर की बल्प बी बर्फ भी दिखाई दे रही --

तो कुछ लोग अपने सर पर माल लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग लोहे के तार पर खड़े हुए हैं।

यहां पर कुछ बच्चे पट्टी पर बैठे हुए हैं और एक गमला भी रखा हुआ है सामने एक लेडिस खड़ी हुई जिसके हाथों में गुलाबी कलर का पेज --

सामने ही एक मूर्ति दिखाई दे रही है तथा मूर्ति के आस पास दो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।